यहां एक पेट्रोल पंप है। यहां पर दो पंप लगे हुए है और दो आदमी खडे हुए है। लाइटें कही जग रही है दो आदमी उन लाइटों की तरफ --

रेड कलर की टी शर्ट चेक वाली पहनी--

टिक पानी सी है और नीचे कुछ हिसे के नीचे कुछ लिखा सा--

खड़ा हुआ हैं ये लकड़ी के फ्रेम पर बहुत सारी मधुमखियां भी लगी हुई हैं।

हरी हरी घास है और इन अअ घास अ सामने आसमान दिखाई दे रहा है।

जिसके पैरों पर चोट लगी हुई है दोनों पैरों पर चोट लगी हुई--

कपबोर्ड सी बनी है कपबोर्ड पर एक--

टायर वाली चीज पर एक बड़े से सामान को रख कर ले जा रहे हैं।

कट्टे हुए कैटर ड्रम है एक दो और पीछे तीन चार आदमी भी खड़े हुए है।

एक दो लड़कों ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है दो ने लाल--

यह एक दफ्तर था दफ्तर मे कई लोग बैठे हुए है मेज पर एक कम्प्यूटर लप--

कई कोरिया सी रखी हुई है एक पोट सा रखा हुआ है।

एक छोटी सी व्हाइट कलर की भी बिल्डिंग है।

सरदार खड़ा है सरदार ने व्हाइट कुर्ता पायजामा पहना है पगड़ी लगाई है।